chimera का उपयोग करके picking and selection पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे परमाणुओं और residues के लिए लेबल्स दिखाना
select menu का प्रयोग करके या picking द्वारा परमाणुओं और residues को चुनना
residues का रंग और प्रदर्शन बदलना
परमाणुओं को जोड़ना मिटाना या बदलना बॉन्ड्स को घुमाना
डिस्प्ले विंडो पर एक से अधिक मॉडल खोलें मॉडल को चुने और मूव करें
इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने के लिए आपको स्नातक स्तर की biochemistry का ज्ञान होना चाहिए
या structural biology से परिचित होना चाहियें सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेब साईट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं ubuntu operating system वर्जन 1404 का उपयोग कर रही हूँ
chimera वर्जन 1102
mozilla firefox ब्राउज़र 350
और एक कार्यकारी इन्टरनेट कनेक्शन
यहाँ मैंने एक chimera window खोली है
rapid access window पर अभी उपयोग किये डेटा की सूची से 1zik पर क्लिक करें
graphics window पर leucine zipper का एक मॉडल खुलता है
किसी संरचना के अलग अलग अवयवों जैसे कि: रेज़िडियु परमाणु बॉन्ड्स आदि में chimera में उपलब्ध टूल्स प्रयोग करके संशोधन किया जा सकता है
पहला स्टेप चुनाव करना होता है
चुनने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं: मेनू बार में select मेनू का प्रयोग करके
graphics विंडो से picking
कमांड लाइन पर कमांड टाइप करके या favorites मेनू में उपस्थित model panel और sequence विकप्ल चुनकर
chimera विंडो पर वापस जाएँ
leucine zipper मोटिफ leucine रेज़िडियु का पीरिऑडिक दोहराव से बनता है
अब मैं दर्शाउंगी कि इस संरचना में उपस्थित leucine को किस प्रकार हाईलाइट करना है
प्रीसेट मेनू से interactive 2 विकल्प चुनें
select मेनू से residue विकप्ल चुनिए
सबमेनू में बहुत से विकल्प हैं
एमिनो एसिड केटेगरी मेनू में एमिनो एसिड्स इस प्रकार वर्गित हैं: aliphatic aromatic hydrophobic polar इत्यादि
इस संरचना में उपस्थित एमिनो एसिड रेज़ीडियुज़ की सूची मानक एमिनो एसिड मेनू में उपलब्ध है
सारे leucine रेज़ीडियुज़ अब हाईलाइट हो जाते हैं
actions मेनू पर क्लिक करें और color चुनें
मैं रंगों की सूची से पीला चुनुंगी सभी leucines अब पीले रंग में प्रदर्शित हैं
चुनाव को हटाने के लिए select मेनू पर क्लिक करें उसके बाद clear selection विकप्ल पर क्लिक करें
leucine hydrophobic होने के कारण प्रोटीन के hydrophobic कोष में भरा होता है
प्रीसेट विकल्प का प्रयोग करके प्रदर्शन को रिबंस में बदलें interactive 1 पर क्लिक करें
स्क्रीन से रेज़िडियु चुनने के लिए: कर्सर को संरचना के ऊपर घुमायें
पहचान सकने वाली जानकारी के साथ एक popup balloon दिखाई देता है
इसमें residue का नाम नंबर और चेन जैसी जानकारी होती है
जब आप कर्सर चलाते हैं तो balloon अद्रश्य हो जाता है
कर्सर को चेन a के पहले residue पर लायें वह arginine है
कीबोर्ड की ctrl की key को दबाएँ रखें और माउस के बाएं बटन को क्लिक करें
डिफ़ॉल्ट रूप से चुनाव हरे रंग में रूपरेखित होता है
यदि आप एक से ज्यादा चुनना चाहते हैं; कीबोर्ड की ctrl और shift दोनों की को दबाएँ रखें
जो residues आप चुनना चाहते हैं उस पर क्लिक करें
कीबोर्ड से ctrl और shift दोनों कीज़ को छोड़ें
अब आपने रेज़िडियु को संशोधन के लिए चुन लिया है
actions मेनू पर क्लिक करें
उदहारण के लिए परमाणुओं को दर्शाने के लिए atoms/bonds चुनें
चुने हुए रेज़ीडियुज़ अब परमाणुओं के प्रदर्शन में दिखाई देतें है चुनाव को क्लियर करें
हम picking से संरचना में उपस्थित परमाणुओं या बॉन्ड्स में परिवर्तन कर सकते हैं
कर्सर को एक ऑब्जेक्ट जैसे एक परमाणु या बॉन्ड पर रखें
यह अपनी लेबल की जानकारी एक atomspec balloon में दिखायेगा
परमाणु के लिए atomspec balloon में ऐसी जानकारी होती है जैसे: residue का नाम नंबर चेन और परमाणु का नाम
परमाणु को चुनने के लिए कीबोर्ड की ctrl कीkey को दबाएँ रखें
ctrl की को दबाये रखते समय उस परमाणु पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हों
परमाणु अब हाईलाइट हो जाता है परमाणु में संशोधन करने के लिए ctrl की को दबाकर रखते हुए परमाणु पर डबल क्लिक करें
context menu विकल्पों के साथ खुलता है
ctrl की छोड़ें
build structure विंडो खुलती है
चुने हुए परमाणु को बदलते हैं अर्थात नाइट्रोजन को मिथायल ग्रुप में
build structure विंडो मे element में carbon bonds में 4 और apply बटन पर क्लिक करें
पेनल को देखें
मिथायल ग्रुप अब मौजूदा संरचना में जुड़ गया है
बॉन्ड्स को घुमाने का भी एक विकल्प है
जिस बॉन्ड को आप घुमाना चाहते हैं उसके ऊपर कर्सर को घुमायें
बॉन्ड से सम्बंधित जानकारी atomspec balloon में दिखाई देती है
बॉन्ड चुनने के लिए कर्सर को बॉन्ड पर रखें
माउस के बाएं बटन को क्लिक करें
ctrl की को दबाकर रखते हुए बॉन्ड पर डबल क्लिक करें
कीबोर्ड पर ctrl की को छोड़ें
contextmenu खुलता है rotate bond विकल्प पर क्लिक करें
स्क्रीन पर build structure डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
डायलॉग बॉक्स में उपस्थित रोटेटिंग टूल को क्लिक और रोटेट करें
पैनल को देखें चुना गया बॉन्ड अब घूम रहा है
जब आप वांछित कोण पर पहुँच जाएँ तो घुमाना बंद कर दें डायलॉग बॉक्स बंद करें
हम चेन्स को हाईलाइट करने के लिए टूल मेनू के sequence विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं
टूल्स मेनू में नीचे जाएँ और sequence विकल्प पर क्लिक करें
सबमेनू से sequence चुने
show model sequence डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
उसके बाद show पर क्लिक करें
स्क्रीन पर एमिनो एसिड सीक्वेंस के साथ एक अन्य डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
amino acid residues सिंगल अक्षर की तरह प्रस्तुत होते हैं
चुनने के लिए सीक्वेंस पर क्लिक करें
chain a अब हाईलाइट हो जाती है
विंडो बंद करने के लिए quit पर क्लिक करें
पीले विकल्प पर क्लिक करें
चुनाव को हटाएँ
हम chimera window पर एक से ज्यादा संरचनाएं खोल सकते हैं
दूसरी संरचना खोलने के लिए: फाइल मेनू में ऊपर से नीचे जाएँ
fetch by id पर क्लिक करें
fetch structure by id डायलॉग बॉक्स खुलता है
फिर 4 अक्षर pdb code टाइप करें
fetch बटन पर क्लिक करें
पैनल पर दो प्रोटीन संरचनायें एक दुसरे के ऊपर आ जाती हैं
दो क दुसरे पर आई संरचनाओं को अलग करने के लिए: हमें एक मॉडल को चयनपुर्वक पैनल पर लाना होता है
favorites मेनू उपयोग करके command line खोलें
command line विंडो के निचले हिस्से में दिखाई देती है
मॉडल ज़ीरो को अनचेक करने के लिए क्लिक करें जो leucine zipper को प्रदर्शित करता है
कर्सर को insulin संरचना पर लायें: माउस का मध्य बटन दबाएँ
फिर मॉडल को पैनल पर इच्छित जगह तक लाने के लिए खींचें
मॉडल को चयनपुर्वक स्क्रीन से हटाने के लिए: favorites मेनू का उपयोग करके मॉडल पैनल खोलें
model panel डायलॉग बॉक्स दिखता है
जिस मॉडल को आप हटाना चाहते हैं उसे model id पर क्लिक करके चुनें
जैसे कि मैं स्क्रीन से insulin मॉडल हटाना चाहती हूँ
क्लोज विकल्प पर क्लिक करें
insulin का मॉडल स्क्रीन से हट गया है
मॉडल पैनल विंडो को बंद करें
हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
जो हमने सिखा है उसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने परमाणुओं और residues को लेबल करना सीखा
select menu का प्रयोग करके या picking द्वारा परमाणुओं और रेज़ीडियुज़ को चुनना
residues का रंग और प्रदर्शन बदलना
परमाणुओं को जोड़ना मिटाना या बदलना बॉन्ड्स को घुमाना
मॉडल को चुनना और मूव करना
नियत कार्य के लिए chimera विंडो पर human insulin pdb code 4ex1 की संरचना खोलें
सभी hydrophobic एमिनो एसिड्स residues को नीले रंग में रंगें
सभी polar residues को लाल रंग में रंगें
आपका पूरा नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडीयो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है